गुड मॉर्निंग एवरीवन जैसे आप देख सकते हैं मुझे यहां पर एक इमेज दिख रही है। जिसके अंदर एक हॉल है। उसके अंदर स--

प्रिंटिंग सेंटर है जिसका नाम अलंकार फ्लेक्स प्रिंटिंग --

मेरे सामने एक इमेज है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस इमेज में मुझे ये ऐसा देखके समझ आ रहा है कि ये एक --

हेलो फ्रेंड्स मेरे सामने एक इमेज है और ये इमेज को देख के लग रहा है।

हेलो फ्रेंड्स मेरे सामने ये इमेज है और ये इमेज को देख के लग रहा है।

और इसमें एक वोट है जिसमें बहुत सारे लोग--

हेलो फ्रेंड जैसे मै देख पा रहा हूं मेरे सामने एक इमेज है और ये इमेज को देख के लग रहे है कि ये फंक्शन गाड़ी है जिसमें कुछ डी_जे --

हेल्लो फ्रेंड्स जैसे मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने एक इमेज है और ये इमेज को देखकर लग रहा है कि ये एक कपड़े की शॉप है जिसमें--

हर कलर की प्लेटे अर कप रखे हुए जो किचन में उस होते हैं।